बहोत से बुक हैं बहोत से किताब हैं।

सामने को दिवाल पे कुछ पेंटिंग रखी हुई--

कुछ लोग हैं पंडित जी बैठे हुए हैं सामने तो थाली हैं।

ते है बाइबिल पढ़ने को एक रेड कलर का कुछ लगा हुआ है बहोत बड़ा बिल्डिंग है।

का एक लोगो भी लगा हुआ है प्लस --

जहां पे बहोत सारे प्लेटफार्म है।

पेट्रोल पंप है जहां पे बहोत सारे कस्टमर पेट्रोल भरने के लिए आए हुए है।

एक पार्लर हैं जहां पे हेयर ट्रीटमेंट करा जाता हैं।

वहां पे बैनरे और कुछ और लगा हुआ है बहोत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए है।

कल्चर हॉल ऑथेंटिक है बहोत सारे ऑथेंटिक म्यूजिशियन के समान रखे हुएं हैं।

एक वेडिंग हॉल है जहां पे एक वेडिंग के लिए सजाया गया है।

सामने स्टेज रखा हुआ है स्टेज के पीछे डेकोरेशन की गई है।

एक मंदिर है जो की जंगल के बीच है।

पानी जहाँ जह रहा है वहां पे बहुत सारे पत्थर हैं।

स्टड्स का हेलमेट का एक दुकान है जहां पे बहुत सारे--

बुर्ला का सम्बलपुर यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल है जोकि बॉयस हॉस्टल है।

एक छोटा सा कैफे है।

जमीन चे खेतों मे रखा हुआ है।

एक घर है घर के अंदर एक गार्डन है जहां पे की नारियल के पेड़ लगे हुए हैं।

संबलपुर में एक जगह है घूमने वाली जो की डियर पार्क है वहां पे बहोत सारे--

ये घुमन्तु फिश है जो बहोत बड़ा है।

वहां पे फुल माल बहुत सारे हैं।

एक कार खड़ा हुआ है उसके साइड में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है साइड में दो चार घर है।

ऊपर के टाइम में एक बैनर लगा हुआ है बैनर में आशना फर्नीचर लगा हुआ है।

एक गाड़ी खड़ी हुई है ऊपर कुछ लोग फोटोस ले रहे हैं आसमान में चांद भी दिख रहा है।

कुछ घर के छत वह दिख रहे हैं दो चार पेड़ लगे हुए हैं।

एक रस्ता है उसमें दो चार गाड़ियां जा रही हैं एक व्हाइट कलर का कार है और एक येलो कलर का कार है।

एक ऑफिस है ऑफिस में कॉर्नर में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं एक टेबल है तीन चेयर है।

साइड में एक टी पाट है एक सोफा है ए_सी लगा हुआ है पीछे खुला दरवाजा है बेलकोनी है।

कुछ सजावट के लिए रखा गया सामान है।

बहुत सारी सिलिंग्स में फैन लगे--

एक मंदिर है जो की बहोत पुरानी दिख रही है।

बहोत सारे लोग एक हॉल में बैठे हुए हैं।

यो एक टीचर है जो योगासन सीखा रही है और वो लोग एक्सरसाइज कर रहे है।

ऑरेंज कलर का पेंट किया गया है।

बहोत सारे पेंटिंग लगी हुई है।

इलेक्ट्रिकल खंभा है रास्ता गया हुआ है।